पीछे पेड़ पौधे लगे हुए हैं सामने दीवाल दिख रही है।

पीले कलर की पॉलिथीन पड़ी दिख रही है।

तीन मंदिर बने हुए हैं फर्श है फर्श के ऊपर बेंच पड़ी हुई है।

पीछे खंभा दिख रहा है एक दीवाल है दीवाल पे सीनरीज लगी हुई है।

झंडा लगे हुए हैं। दो आदमी खड़े हुए हैं। शीशा लगा हुआ है सामने।

ये एक क्रेन दिख रही है व्हाइट ऑरेंज कलर में। दो पहिया दिख रहे हैं।

व्हाइट और ग्रे ग्रे कलर की पेंटिंग है।

एक आदमी जा रहा है एक और आदमी हूं उसके पीठ पर बैग लगा हुआ है।

सामने काम चल रहा है बहुत ढेर सारी सी मिट्टी पड़ी हुई है।

गेट लगे हुए दिख रहे हैं एक खंभा दिख रहा है उसपे लाइट लगी हुई है।

रोड दिख रही है आदमी दिख रहे हैं गाडियां दिख रही है।

उसमें अंडरवियर बनियान वगैरा है येलो कलर का एक डिब्बा दिख रहा है।

रिलायंस पेट्रोल पंप दिख रहा है ट्रक खड़ी हुई देख रही है।

ग्रे कलर की शूज पहने हुए हैं व्हाइट कलर का मास्क लगाए हुए हैं हाथ में फोन पकड़े हुए हैं।

व्हाइट कलर का पेंटिंग है टाइल्स लगे हुए हैं।

बहुत ढेर सारी अलमारी में बुक्स रखी हुई हैं।

एक लड़का खड़ा हुआ है काली पैंट पहने सफेद शर्ट पहने हुआ लाइट लगी हुई है पंखा दिख रहा है।

ग्रे कलर की बिल्डिंग है। ये मोटर्स शॉप है।

टर लगा हुआ है पीछे पेड़ ढेर सारे लगे हुए हैं।